और यहां पर आपको कुछ घर भी बने हुए दिखाई देंगे यहां आपको गाड़ियां भी रखी हुई देखने को मिलेगी।

एक आदमी के हाथ में मुझे घड़ी पहने हुई दिखाई दे रहा है।

और उसमें फूल भी हैं और यहां आप देखेंगे कि दो आदमी दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें पानी भी भरा हुआ देखने को मिला और यहां आप देखेंगे की पेड़ें भी लगे हुए दिखाई दे रहे --

और यहां एक शीशा भी है और यहां पर कुछ मुझे ऑफिशियल किट भी दिखाई दे रहें--

यहां मुझे कुछ म्यूजिक के गिटार टंगे हुए दिखाई दे रहे--

यहां दो आदमी भी खड़े हुए देखने को मिल रहे हैं।

यहां पर मुझे एक ढाबा बना हुआ दिखाई दे रहा --

यहां आप देखेंगे कि कुछ चारपाई भी डली हुई हैं।

यहां पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

कुछ बलून भी है जिसका कलर ब्लैक और यलो और व्हाइट है।

और यहां पर बहोत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए देखने को मिल रहे और छोटी छोटी घास भी।

और यहां पर आपको कुछ डिब्बे भी रखे हुए दिखाई देंगे।

यहां आप देख सकते हैं कि एक बहोत बड़ा हॉल बना हुआ दिखाई दे रहा है।

और यहां पर कुछ पानी भी भरा हुआ है उसमें मुझे हिरण दिखाई दे रहे हैं दो--

और यहां पर एक पौधे में कुछ फूल भी लगी हुई देखने को मिल रहे--

और यहां मुझे बादल भी देखने को मिल रहे--

और यहां से मुझे सूरज भी दिखाई दे रहा है।